ये तस्वीर एक वीजा ऑफिस की है जिसका वर सेक्शन टेबल पे बाहर काफी बड़ा पोस्टर लगा हुआ--

ये तसवीर एक सड़क की है जिसके रोड पे काफी छोटे छोटे किराने को दुकाने बनी हुई है और अ--

नारियल और मंदिर की सजावट का समान रखा हुआ दुकान से लड़का खरीद रहा है।

ये तस्वीर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल वर्क कि है।

और एक स्टिक से बॉल को जोर से हिट कर रही हैं।

और वाशिश में एक आदमी हैंड वॉश कर रहा है टेबल पे नैपकिन बोट पानी की बोटल और गिलास पड़े है।

यह तस्वीर एक खेत की है जिस खेतों में पानी लगा हुआ है।

और उसके नाम के बाहर काफी दो पोस्टर लगे हैं आसपास छो एक दो पेड़ भी लगे हैं।

इस तस्वीर में एक बड़ी बस है रोडवेज की जिसके पास कुछ औरतें और आदमी खड़े हैं एक बस कंडक्टर भी खड़ा है।

छोटे पौधे लगे हैं पीछे काफी लोग कर चलते-फिरते नजर आ रहे हैं।

और छत की तरफ छोटे छोटे पौधे की ये पत्तीयां लगी हुई है और कलर फुल बल्ब की लाइटिंग भी ऑन है।

इसमें सफेद ब्लू और यलो कलर का पेंट किया गया हैं इसके आस पास काफी पेड़ पौधे भी है।

जिसके बाहर काफी भीड़ लगी हुई है और एक आदमी अपनी दुकान मे कुछ फ्राई कर रहा है।

जिसके बाहर दो गाड़ियां लगी है और साइड में वॉशरूम बने हुएं हैं।

और टेबल पे काफी पेन बुक और काफी फाइल्स भी पड़ी हुई--

ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं और एक स्टेशन पे काफी बड़ा पेड़ लगा हुआ है और पास में ही एक बिजली का खंबा बना हुआ है।

झाड़ियों में नजर आ रहा है और सामने सड़क पर एक लड़की नजर आ रही है।

इस तस्वीर में काफी टॉयलेट शीट पड़ी हुई हैं उनके पास टाइल साफ करने के प्रोडक्ट भी हैं।

अलग अलग डिजाइन मॉडल की टॉयलेट सीटे --

और नीचे काफी गहरी खाई है और काफी पेड़ भी लगे हुए है दूर दूर तक काफी पहाड़ नजर आ रहे है।